मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जेनरल प्रेफरेंसेस और प्राइवेसी प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करें
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं
मोजिला फायरफॉक्स में प्रेफरेंस हमें आसानी से पुनरावृत्तीय कार्यों को करने की अनुमति देता है
विंडोज़ उपयोगकर्ता के लिए इस फीचर को Optionsऑप्शंस कहते हैं
उदाहरण के लिए मानिए कि हमें अपना इमेल लोगिन पेज को होमपेज के रूप में सेट करना है
अतः हम एडिट एडिट और Preferencesप्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे
विंडोज़ उपयोगकर्ता को टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करना चाहिए
प्रेफरेंस या आप्शंस डाइअलॉग बॉक्स खुलता है
डाइअलॉग बॉक्स में उपरी तरफ कई टैब्स हैं
सभी का कार्य अलग है
जनरल पैनल में अधिक सामान्यतः उपयोगी सेटिंग से संबंधित वरीयताएँ हैं
जैसे कि फायरफॉक्स होमपेज की सेटिंग फाइल डाउनलोड़ लोकेशन की सेटिंग
चलिए सीखते हैं कि कैसे जीमेल को अपने डिफॉल्ट होमपेज के रूप में सेट करें
स्टार्ट यूपी में व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट्स ड्रॉपडाउन मेन्यू में शो माय होम पेज चुनें
डिफाल्ट रूप से होम पेज फिल्ड मोजिल्ला फायरफॉक्स स्टार्ट पेज पर सेट है
होम पेज फिल्ड में क्लिक करें और wwwgmailcom टाइप करें
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज़ बटन पर क्लिक करें
हमारी सेटिंग्स स्वचालित रूप से सेव ही जाएंगी
अब इस फ़ायरफ़ॉक्स विंडो को बंद करें
और नई फ़ायरफ़ॉक्स विंडो खोलें
आप देखेंगे कि जी मैल लागिन पेज होमपेज है
अब सीखते है कि मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स डाउनलोड्स कैसे संभालता है
एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
जैसा पहले बताया गया है विंडोज़ उपयोगकर्ता कृपया टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करें
जनरल टैब पर क्लिक करें
डाउनलोड्स ऑप्शन में शो थे डाउनलोड्स विंडो व्हेन डाउनलोडिंग आ फाइल चेक बॉक्स में क्लिक करके उसे चुनें
सेव फाइल्स टो रेडियो बटन पर क्लिक करके उसे चुनें
ब्राउज बटन पर क्लिक करें और डिफॉल्ट फोल्डर को डेस्कटॉप में बदलें
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
पहले जैसे हमारी सेटिंग्स स्वचालित रूप से सेव होगी
ब्राउज़र्स सर्च बार में फ्लावर्स टाइप करें और दाईं ओर आवर्धक लेंस चिन्ह पर क्लिक करें
दिखाई देनेवाले पहले सर्च परिणाम पर राइट क्लिक करें
सेव लिंक एएस पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर यह लिंक डाउनलोड होगा
सेव पर क्लिक करें और फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी
टैब्स पैनल में टैब्ड ब्राउजिंग फीचर से संबंधित वरीयताएँ हैं
कंटेंट पैनल में वेबसाइट्स कैसे प्रदर्शित होती हैं इससे संबंधित वरीयताएँ हैं
एप्लीकेशन पैनल से आप तय करते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स विभिन्न प्रकार की फाइल्स का कैसे संचालन करना चाहिए
यह एक पीडीएफ डॉक्युमेंट या ऑडियो फाइल हो सकती है
नियत कार्य के रूप में इन टैब्स और ऑप्शंस को देखें
प्राइवेसी पैनल में आपके वेब प्राइवेसी संबंधित वरीयताएँ हैं
ट्रैकिंग में टेल वेब साइट्स आई डीओ नोट वांट टो बीई ट्रैक्ड का चुनाव करते हैं
इस ऑप्शन का चुनाव आपकी ब्राउजिंग गतिविधि के बारे में जानकारी संचित करने से वेबसाइट्स को रोक देगा
हिस्टोरी में कई ऑप्शंस हैं
फायरफॉक्स विल फील्ड में नेवर रिमेंबर हिस्टोरी को चुनें
इस ऑप्शन को चुनने का मतलब है कि आपने जो भी ब्राउज़ किया है उसकी जानकारी इस कंप्यूटर में नहीं रहेगी
यदि हम क्लीयर अल्ल करेंट हिस्टोरी पर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में संचित सभी ब्राउजिंग विवरण समाप्त हो जायेगा
नीचे लोकेशन बार पर आएँ
व्हेन यूजिंग थे लोकेशन बार suggest फील्ड में ड्रॉप डाउन ओपन करें और नोथिंग चुनें
ऐसा करने पर जब भी आप एड्रेस बार में नयी उर्ल प्रविष्ट करते हैं तो आपको सुझावों के साथ संकेत नहीं दिया जायेगा
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
आपकी गोपनीयता प्राइवेसी अब पूरी तरह से सुरक्षित है
सिक्यूरिटी पनेल सेक्युरिटी पैनल में आपके वेब ब्राउजिंग को सुरक्षित रखने से संबंधित वरीयताएँ होती हैं
सिंक पनेल सिंक पैनल आपके फायरफॉक्स सिंक एकाउंट का प्रबंध या सेट करता है
फायरफॉक्स Syncफायरफॉक्स सिंक हमारी हिस्ट्री बुकमार्क्स और पासवर्ड सभी विभिन्न डिवाइस में उपयोग करता है
एडवांस्ड Panelएडवांस्ड पैनलमें कुछ महत्वपूर्ण फायरफॉक्स सेटिंग्स होती हैं
इसमें फायरफॉक्स की गतिविधि पर नियंत्रण के लिए ब्राउजिंग और सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं
हम नेटवर्क ऑप्शन का उपयोग करके इंटरनेट से फायरफॉक्स को जोड़ने वाले मार्ग को कंफिगर कर सकते हैं
नेटवर्क tabनेटवर्क टैब में कनेक्शंस के नीचे सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें
यह कनेक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन करता है
यहाँ आप प्रोक्सीस कंफिगर कर सकते हैं
प्रोक्सीस का उपयोग प्रदर्शन को बेहतर बनाने और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है
डिफॉल्ट रूप से उसे सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स रेडियो बटन चुनित होता है
यह ऑप्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंफिगर की गई सेटिंग्स का उपयोग करता है
प्रोक्सी सेटिंग्स खुद से एंटर करने के लिए मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फिगरेशन बटन पर क्लिक करें
आप अब इन फिल्डस में प्रोक्सी सेटिंग्स एंटर कर सकते हैं
कनेक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
फिर से प्रेफरंस या ऑप्शन्स डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
आपकी सेटिंग्स स्वतः ही सेव हो जायेंगी
आखिर में हम एडवांस्ड पैनल में अपडेट टैब का उपयोग करके फायरफॉक्स को अपडेट कर सकते हैं
अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जेनरल प्रेफरेंसेस और प्राइवेसी प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करें
इस नियत कार्य का अभ्यास करें
एक नयी ब्राउजर विंडो खोलें
अपने होमपेज को spoken tutorialओआरजी में बदलें
अपनी डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को होम फोल्डर में बदलें
अपनी व्हेन यूजिंग थे लोकेशन बार suggest सेटिंग्स को हिस्टोरी और बुकमार्क्स में बदलें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद